जो एक पर्यटन स्थल पर गए हैं।

जिसके अंदर एक दरवाजा बनाया गया है।

यह फोटो रास्ते पर खींचा गया है।